एक यहां पर उसमें काउंटर बनाया हुआ है लकड़ी का और इसके आगे एक स्कूटी खड़ी की हुई है।

कुछ पीले कलर के गुलाबी नारंगी हरे कलर के सफे--

और एक यहां पर दरवाजा बना हुआ है और इसके फर्श में सफेद टाइल्स लगाई हुई है ओ --

शॉप पे लगे हुए है तीन और उनके आगे टैबले रखी हुई है एक लकड़ी की टेबल रखी हुई है और एक कांच की टेबल --

जा रहा है और यहां पर काफी सारी भीड़ इकट्ठी हुई है और उनके हाथ में फूल कि मालाएं ली हुई है।

और इसके आगे कुछ पेड़ लगे हुए हैं और दो यहां पर बड़े गेट इसके अंदर जाने के लिए लगाए हुए हैं।

टायर वाले भैया गए यहां पर और कुछ इसमें दीवारों में हुए हैं और यहां पर खिड़कियों में पर्दे लगाए हुए हैं।

एक लाल कलर की यहां पर कुर्सी रखी हुई है।